रैक है कांच है बिल्डिंग है बैनर है कुछ लोग है।

बुक स्टोर है कुछ बलून है कुछ रैक है कुर्सी है।

पीछे मंदिर है ऊपर उसका गुंबद है लोग हैं पेड़-पौधे हैं घास हैं।